एक ग्रीन कलर की अ एक अ सटर है जिसके निचे वेदांत बुक वर्ल्ड लिखा हुआ हैं।

एक औरत एक आदमी है जिसने नीले कलर की शर्ट पहने हुए है पीछे हॉल एक है जिसमे एक लाइटिंग जल रही है।

ज्योती के प्रा ली लिखा हुआ है डेली सर्वे है और सामने कुछ बस है और एक गाडी है और कुछ स्टाल है दुकान है साइड से एक बस है और पेड़ पौधे खडे हुए हैं पीछे --

उस पर अ अजीरा पुर लिखा हुआ है साइड से कुछ लोग खड़े हुए है कुछ रिक्शा चला रहे हैजमीन है उसपे कुछ कचरा डला हुआ है साइड से एक आदमी है।

फैक्ट्री है जिसमे कुछ लोग खड़े हुए है जालियां है और कुछ लाइटिंग लगी हुई है कुछ निचे गिट्टी है जिसपे कुछ कट्टे भरे हुए है।

एक गमछा डाले हुए है पीले कलर का एक औरत है जो की ब्लू कलर की साड़ी पहने हाथ में एक पन्नी है एक बगल मै आदमी है जो की ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुए है।

ये ईमारत है जिसपर श्री महंत हरिद्वार दास उच्च विद्यालय लिखा हुआ है।

सिर पे गमछा लगाए हुए है बनियान पहने हुए है बगल में एक पंडित बैठा हुआ है जो की एक सामने एक ब्लू कलर की दिवार है जिसे देख रहा है और कुछ उसमे से एक लाइटिंग आ रही है चारो तरफ से लाइटिंग आ रही है।